एम पार्क के अंदर बहोत से झूले चेयर्स और बहोत सी बिल्डिंग बहोत से मिन्न बहोत से टावर वगैरा है।

एक बॉटल रखें हुई है एक कारपेंट बिछीं हुई है और काफी सुंदर नजारा है।